और सबसे नीचे वाले मंजिल में हम रोजाना काम क आने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं।

ये एक बहु मंजिला ईमारत है।

यहाँ पर दो तीन माल वाहक ऑटो है जो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले के जा रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सा चित्रायसूती हैं इसके सामने एक दो मंजिला ईमारत हैं जो बहुत पुराणी हैं।

यह एक बाल काटने की जगह की फोटो है यहां दुकान बंद होने के कारण अभी कोई नहीं है।

कुछ सामान जो बाल काटते वक्त जरूरत होती है वो इसके सामने रखा है बैट्रिक लिए कुर्सी आदि लगी हुई हैं।